यह किसी स्टेशन का बस स्टैंड है। उस तरह का फोटो दिख रहा है। जहां तीन बसें ई दिख रही है। बस का पीछे का हिस्सा दिख रहा है सामने से दो बस दिख रही है। बस के आगे कुछ लिखा दिख रहा है। साइड में वो दिख रहा है। खम्बे लगे दिख रहे है जिस पर लाइट लगी दिख रही है।

एक नदी दिख रही है जिसके ऊपर एक पुल बना दिख रहा है पुल के नीचे पिल्लर लगे दिख रहे है राईट साइड कुछ मिट्टी का खेत दिखाई जमीन दिखाई दे रही है।

ये एक पुल का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिख रहा है बोर्ड के ऊपर ब्लेक कलर और औरेंजे की कुछ डिज़ाइन बनायीं गयी दिख रही है उसके ऊपर एक ऐरो बना दिख रहा है।

यह एक नदी का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ दिख रहा है पुल के ऊपर सामने से बाइक गाड़ी आती दिख रही है राइट साईड कुछ झाड़ दिख रहे है।

चर्च के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सामने प्लस के साईन के पीछे जीसस भगवान की मूर्ति दिख रही है सामने एक स्टेज बना दिख रहा है उसके आगे लाल पीला हरे रंग के कपड़े लगाईं दी गई --